बोहोत ही अच्छी दुकान है मकान बनी हुई है। जहाँ पर हर तरह के सामान मिलती है। जन जनरल --

केडबरी का एजेंसी है । ये इसका ओपनिंग डे है। आ जिसक में --

और हमलोग यहाँ घूमने जाते हैं।

ये पेट्रोल पंप है।